ग्राउंड में नीचे छोटे छोटे घास लगी हुई है।

इस हॉल में बहोत सारे लड़के और लड़कियां हैं।

चारों तरफ पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

एक योगा कर रही है महिला।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

मकान के बगल में और भी मकाने दिख रहे हैं।